एक यहाँ पर लैपटॉप रखा है काले रंग का माउस रखा है काले रंग का --

जैसा की में यहाँ देख पा रही हु यहाँ पर मंदिर है जो की गोविंदा जी का मंदिर लिखा हुआ है तथा यहाँ पर शटर पड़ा है।

जो कि यहाँ पर सिलेटी रंग का है आसमान नीला और सफेद है एक लाल कलर का झंडा लगा हुआ है और यहाँ पर पेड़ लगे हैं हरे हरे --

दुकान में यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स केले और आदि सामान रखा हुआ है जो यहाँ की दुकान है वो पीले रंग की है इसमें --

एक बड़ा-सा टावर लगा हुआ है जो कि सफेद रंग का है पीछे यहाँ पर पेड़-पौधे लगे हैं जो कि --

फर्श है वो यहाँ पर इसकी स्लेटी है दीवारें इसकी पीली हैं एक कुर्सी रखी हुई है भूरे रंग की डोकरी --

वो सफेद रंग की हैं और यहाँ की जो मिट्टी है वो मतलब ए जो यहाँ पर फर्श है वो भूरे रंग के अंदर की जो फर्श है वो स पत्थर की है पीले रंग --

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूँ यहाँ पर ये दीवारें हैं तथा यहाँ पर ये पत्थरों की बनाई गई हैं यह सिलेटी और काही रंग के जीने लगे हुए हैं मिट --

अ अशोक का पेड़ लगा है जो कि हरे तथा काही रंग का है एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि काले रंग के वस्त्र पहने --

जैसा कि मैं देख पा रही है यहाँ पर एक स्टैचू खड़ा है जो कि काले रंग का है पीछे बहुत सुंदर नजारा है जो कि पहाड़ों का है सफेद रंग से बर्फ-बर्फ छाया हुआ --

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं यहां पर ये गारमेंट्स की दुकान है जिसमें --

एक आदमी नीले रंग की शल्ट तथा नीले रंग की पैंट पहने साइकिल रखे हुए है एक स्कूटी सफेद कलर की है।

लोहे के रोड से ये पर्दे लगाए गए हैं पीले रंग का पर्दा और बैंगनी रंग का पर्दा लगा हुआ है तथा यहाँ की जो दीवारें हैं वो पीले रंग की हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही यहाँ पर एक आदमी मछलियों को काट रहा है तथा एक आदमी मछलियों को दूसरा आदमी भी काट रहा यहाँ पर तराजू का बाँट रखा हुआ --

यहाँ पर जो पीछे सजावट है वो पर्दों से है पीले हरे पर्दों से की गई है पूरी सजावट --

और यहाँ पर गुब्बारे लगे हैं स नारंगी सफेद और हरे रंग के आदमी लोग बैठे हुए एक ने यहाँ कंबल ओड़ा है।

तथा यह जो अलमारी वो सफेद रंग की एक आदमी खड़ा जिसका हाथ टूटा जिसने सफेद रंग की पट्टी बाँधी है तथा उसने शर्ल्ट पहनी है काही रंग की।

और यहाँ की जो मेज है वो सफेद रंग के तथा एक कुर्सी ऑरेंज रंग की आदमी बैठा है सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए तथा बहुत सारे पीछे लोग भी खड़े हुए हैं।

यहाँ जो रेक्सीन है वो यहाँ पर नीले और सफेद रंग के फर्श जो है वो पीले रंग की है।

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर एक गार्डन है सामने एक मंदिर दिख रहा है जो कि सफेद और पीले रंग का है और पेड़-पौधे बड़े-बड़े लगे हुए हैं हरे रंग --

छोटे-छोटे घर बने हुए भूरे रंग के यहाँ पर खेते खेत है जहाँ पर पानी भरा हुआ है इसमें खेतों में छोटी-छोटी घास के --

जैसा कि मैं देख पा रही है यहाँ पर ये एक आदमी है जो कि गमले बेच रहा है तथा इसके पास फूल भी लगे हुए हैं पीले गुलाबी लाल --

सिलेटी रंग का है तथा यहाँ पर पीछे पेड़-पौधे काही रंग के दिख रहे हैं और पानी खूब तादाद में भरा हुआ है इसमें --

फर्च जो सिलेटी रंग के लाल पीले और सफेद रंग के गुप --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि खाना खा रहे हैं तथा यहाँ पर जो ऊपर की दीवार है वो यहाँ पर सफेद रंग --

जमीन है वो भूरे रंग की है कुर्सी है क्रीम रंग --

पीछे नीले रंग की अ आसमान है काही रंग का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर तथा लाइटें जो जल रही है वो छोटी-छोटी लाइटें हैं।

गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है पीछे जो परदे लगे हैं वो या नीले तथा लाल रंग के --

नीचे की जो फर्च है वो यहाँ पर हरे रंग की है तथा यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं सब --

और यहाँ पर लाल कलर के छोटे-छोटे पिलर खड़े हुए हैं एक आदमी खड़ा हुआ है एक आदमी आर्मी की ड्रेस पहने हुए एक पुलिस की वर्दी पहने हुए है।

खड़ी है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी है आदमी ने भूरे रंग की शर्ट तथा यहाँ पर क्रीम कलर की पैंट पहनी यहाँ की जो फर्श है वो पिले रंग --

त ये काले रंग की यहाँ की जो रोड है वो सिलेटी रंग की --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर दूर-दूर तक पहाड़ दिख रहा है छोटी-छोटी हरी घास हो गए हरे-हरे पेड़ उगे --

आसमान जो है वो सफेद रंग का बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक यहाँ पर बैठने की कुर्सी पड़ी है जो कि सिलेटी रंग की है पत --

तथा यहाँ की जो दीवारें वो सफेद रंग की हैं और यहाँ की फर्श भुरे रंग --